ये एक बहोत ही बड़ा जाम वगैराह दिखा रखा है।

बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो दिख रही हैं।

अकैडमी का बैनर भी लगा रखा है डिफेन्स अकैडमी का।

और ये एक फैन भी रखा है और उसके पीछे एक कोई वायर भी दीवार के साथ--

और इसका रंग है येलो और रेड कलर ।

और इसके ऊपर जी और टी_डी लिखा हुआ है ज--

बड़े बड़े पत्थर हैं वो दिखा रखे हैं और इसके साथ ही यहां पे--

और ये एक पूरी बड़ी सी दीवार है जिसपे येलो कलर का पेंट कर रखा है।

और ऊपर एक जिम का फोटो भी लगा रखा है।

और उसपे लिखा है एडवांस ग्राफिक्स और नीचे कुछ डाटा वगैरा इनफॉरमेशन वगैरा जो है वो मिरर पे छाप रखी है।

और ये कुछ टेबल फैन भी हैं जो कि दीवार पे दिखा रखे हैं।

जीसके जस्ट ऊपर एक लाइट लगी है कोइ बड़ी सी--

जो कि सब्जियां ले रही हैं और इसके सामने केलों वाली दुकान भी दिखाई--

घूमने वाली जगह है जहां पे बहोत सारी बर--

इसके ऊपर गेंदे के फूल की माला भी लगाई हुई है।

और इसके ऊपर इसकी सारी डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं।

ये एक ड्राई क्लीनर की शाॅप की फोटो है।

जो कपड़ों की ड्राई क्लीन करता है और--

और सामने एक मिरर लगा रखा है और ये दो लड़के हैं वो यहां खड़े हुए हैं।

और कुछ टेबल्स वगैरा भी हैं।